और हमे यहाँ पर बहुत सारे लाइटे दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े नजर आ रहे। और हमे यहाँ पर बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे है। जोकि बहुत अच्छा लग रहा हे।

ऊपर एक कमरा दिखाई दे रहा है। कमरेमे हमे बहुत एक दीवाल दिखाई दे रही है। दीवार का कलर हमे सफेद दिखाई दे रहा है और हमे छत का कलर सफेद नजर आ रहा है। हमे छत--

काले कलर का टॉप और यहाँ पे लाल कलर के कपड़े पेहने हुए दिख रही है और उसने सफेद कलर का जूता पेहना हुआ नजर आ रहा है और हमे यहाँ पर एक नाचते हुए दिखाई दे रही है और हमे उसके पीछे बहुत बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है। जोकि बहुत अच्छा लग रहा है।

पहने नजर आ रही है और हमे यहाँ पे बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो कि यहाँ पे मजे करने के लिए आए हुए नजर आ रहे है।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कार का गेराज दिखाई दे रहा है। जिसमे की बहुत सारी कार रखी हुई दिखाई दे रही है और हमे एक कार छतपे उठाई हूई नजर आ रही है और हमे एक आदमी दिखाई दे रहा है। जो मकेनिक के कपड़े पेहने हुए नजर आ रहा है।